इसपे दीवाल पे कुछ लिखा गया है और सामने के तरफ बहोत--

और एक आदमी अपने चेहरे पे माक्स लगाया हुआ--

इस चित्र में मुझे एक आदमी झाड़ू लगाता हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पे बगल में टाइल्स के सैंपल लगे हुए हैं।